इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक--

नीचे एक बड़ा सा कुंड बना हुआ है पानी का सब उसमे नहा रहे हैं नीचे कुछ और भी लड़के खड़े हुए हैं।

बहुत सारे गाड़ियां पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने के लिए खड़ी है।

होटल में पूरे फुग्गे लगे हुए हैं कोई बड्डे पार्टी है।

एक आदमी है जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है ब्लैक कलर की जींस पेहनी है।

अह सिनरी के फ्लावर पॉट के जो कि बहुत ही सुंदर है सफेद रंग की लाइट जल रही है बहुत सारे पर्स बैग भी रखे हुए है।

फोन रखा है चम्मच रखा हुआ है।

लाल रंग के बहुत सारे गमले भी रखे हुए है।

जोकि मैदान एकदम घास से भरा हुआ है बहोत बड़ा मैदान है क्योंकि क्रिकेट मैदान है जीसमें बहोत सारे लोग खेल रहे हैं सभी--

और बहोत ही कर रहे है कुछ लोग पीछे बाइक भी खड़ी है।